सामने एक महल सा बना हुआ है जो स्लेटी कलर का है और कुछ लाल कलर का है और उसमें पेड़ लगे हुए है।

कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं जोकि एक औरत रसियां ऊल रही है जो कि एक --

कुछ पानी में डली हुई हैं। हरे कलर की नीबू है और कुछ पीछे पेड़ लगे हुए बहोत सारे। इधर की साइड भी कुछ पेड़ लगे हुए।

सूरज की रोशनी आ रही है कुछ पीछे भी घर बने हुए एक नीले कलर की टीन डली हुई है कुछ बगल में भी मंदिर बने हुए हैं उन पर बोर्ड टंगे हुए कुछ लोग गुजर रहे हैं एक बोर्ड नीचे टंगा--

सामने कुछ घर बने हुई घरो का रंग सफेद हरा और नीले कलर की घर बनी हुई कुछ कुरु पिले कलर की भी है इधर कुछ पेड़ लगे हुए है।

एक एसी लगा हुआ और कुछ रिक्शे चढ़ने वाले खड़े हुए एक आदमी बैग टांगे हुए खड़ा हुआ एक फोरजी डेटा लगा हुआ --